और लोग मेहरारू लोग दिखाई दे रहे है जो कुछ लोग स्नान कर रहे है डुबकी लगा रहे हैं कुछ लोग।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

सामने हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है बाइक खड़ी है सामने कार दिखाई दे रही है किनारे बहुत सारी --

सामने बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है जहाँ पर डाला जा रहा है बहुत सारी |

सामने बहुत सारी नाव दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं | लाल कलर का घर दिखाई दे रहा है | ऐसा लग रहा है जैसे कोई चर्च है।